घर है घर मे गेट लगा हुआ है गेट पे ताला लगा हुआ है |

कुछ फोटो कलरफूल है ऊपर बत्ती लगा हुआ है।

पहना है चस्मा लगाया हुआ है टी-शर्ट पहना हुआ है बगल में एक ब्लैक कलर का नाव खड़ा है जिसपे इंडिया लिखा हुआ है ।

यहाँ पे एक मूर्ति है मूर्ति के ऊपर टी-शर्ट पहनाया गया है टी-शर्ट बो लाल कलर का है बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

और देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है इसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं स्टैंड में खड़ा हुआ है ।

और यहाँ पे ओवरलोड गाड़ी नहीं जाने के लिए गेट बना हुआ है।